नदी ह पानी झरना से गिरता हरा हरा घास बा पेड़ बान सन हरा हरा।

हरा-हरा घास बा। जमीन बा। काला-काला मा बा। --